यहा पे और रेड कलर का कार्पेट डाली है।

अ शर्ट पहना गया है जैकेट के जैसा ब्लू कलर का पैंट पहना गया है। एक जन वो ब्लू कलर का पैंट पहना गया उसके उपर वो अ व्हाइट कैप है। एक जन है वो व्हाइट कलर पहना गया है। ब्राउन कलर का पैंट और--

यहाँ येल्लो कलर का टी शर्ट पहना है वो आदमी एक छोटा बच्चा व्हाइट कलर का शूज पहना है लाल कलर का एक बैग --

काहे ये आ हॉस्पिटल सारखा दिख रहा है एक जन है इसको मसाज कर रहा है मसाज कर रहा है एक जन है उसके उपर सो रहा है।

और सारे बच्चे पार्क मे खेल रहे है एक अंकल वो पा दो जने को अंदर डाल रहे है व्हाइट --